यह एक फ्लैट है।

और यहाँ इसाई लोग मैरेज भी करते हैं ये उनका पवित्र स्थल है।

यह हिंदुओ का बहुत बड़ा पर्व है यह बंगाल में बड़े धूम-धाम से और हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है।

यह यात्रियों और समान दोनों को उनके स्थान पे ले जाने में मदद करता है।

यहा बच्चे बैठ कर अपने कला का प्रदर्शन और चित्रकारी करते हैं।

यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है।

यहाँ पे लोग भगवान से मिलने के लिए आते हैं ।